एक पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

दो आदमी बैठे दिखाई दे रहे हैं।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

कुछ गुब्बारे लगे दिखाई दे रहे हैं।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

दो पहाड़ों के बीच से बह रही है।

इस तस्वीर में बहोत सारे लड़के दिखाई दे रहे हैं।

लोहे का पाइप लेकर खड़े दिखाई दे रहे हैं पीछे लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है।

प्रिंटिंग मशीनें दिखाई दे रही है।